इस फोटो में मुझे एक हॉल दिखाई दे रहा हैं।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

इस फोटो में मुझे डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो ने मुझे बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे नाव दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे एक बडी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे पहाड़ दिखाई दे रही--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

इस फोटो में मुझे कॉपी किताब की दुकाने दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे महिला पुरुष दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे पेट्रोल पंप दिखाई दे--

इस फोटो में मुझे लोहे का गेट दिखाई दे रहा हैं।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

इस फोटो में मुझे छोटा सा मैदान दिखाइ दे रहा है।